और कुछ घरे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और बहोत सारे पोल दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहोत सारी लाइटे दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के है।

इस इमेज में मुझे दो दुकाने दिखाई दे रही हैं जो मिट्टी कलर की है और ब्लैक कलर की है इसमें कुछ लाइटे दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है।

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो हल्के येलो कलर का है और बैगनी कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा गार्डन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है जिसमें बहोत सारे छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं जो रेड कलर के हैं और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।